दीवाल पंखा -ऊँखा लगा हुआ हैं।

ऊपर में बहुत सारा टेबल कुर्सी व्हाइट - व्हाइट कलर में लगाए गए है गोल में टेबल है पूरा ऊपर टेंट - उंट लगा हुआ है बीच में एक --

डंडा उन्डा पकड़ के दरवाजे में एक लेडिस भी खड़ी है।